और उसके पास में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक पेड़ लगाया हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे एक आदमी फोन लेके खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

जहां पे ढेर सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे ढेर सारी स्विच बोर्ड भी रखी हुई नजर आ रही हैं।

इसके आसपास ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

भी दिखाई दे रहे हैं पेन खोलने वाला और यहां पे उसके अथिया भी लगी हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में ढेर सारे लोग मैट पे बैठकर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

कैट की चीजें रखी गई है।

और स्कूटी के सामने कुछ बाइक और शीशे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं।

प्लेयर्स लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

इन्होंने रेड एण्ड ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए।

और उसके बगल में ईटे से यह रूम दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ काले काली चीजें भी हो गई हैं।

यहां बास भी कुछ टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे पीछे में एक चेयर के पास ढेर सारी ट्रॉफी रखी हुई दिखाई दे रही है।

उसके बगल में व्हाइट पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक कपड़ा का दुकान दिखाई दे रहा है।

और यहां पे एक पोल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे लाल कलर के एक सीढ़ी बनी हुई नजर आ रही है।

रिपेयरिंग वर्कशॉप दिखाई दे रहा है।

जो चट्टान जैसे नजर आ रहे हैं।

और यहां पे एक छोटा सा पंछी भी है जो एक सूखे पौधे पर नजर आ रही है।

यह किसी चीज का फाउंडेशन का कार्यक्रम चल रहा है।

और यहां पर किनले वाटर भी दिखाई दे रहा है समोसा और ढेर सारी चीज उस पर रखी लिखी हुई नजर आ रही है।

यह एक पोस्टर है इसके उपर में करकट दिखाई दे रहा है जिसमें ढेर सारी लोहे की चीजे लगाई गई है और इसके पीछे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

उसके बगल में मिट्टी के ऊपर है।

और सामने में कुछ घर भी बने हुए नजर आ रहे हैं कुछ ईंटे की भी चीजें दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे खाने पकाने वाली चीजें भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक रैक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में ढेर सारे बैग रैक के ऊपर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पे दो रैक बने हुए हैं एक नीचे के ऊपर जो वाइट कलर का है।

डीजल निकली हुई नजर आ रही है जिसपे प्लास्टिक लगाया हुआ है।

उसने अपनी दांत को ऐसे किया हुआ है।

इस तस्वीर में ढेर सारे नेल पॉलिश दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू पिंक रेड ब्लैक कलर में है।

और यहां पे कुछ टिकलिया भी दिखाई दे रही है।

यहां पे हिंदी भी दिखाई दे रही हैं।

और यहां पे नीचे में ब्लैक कलर के फर्श रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक लड़की भी दिखाई दे रही है।

और ऊपर पे छड़ लगाया गया है।

इन्होंने व्हाइट एंड रेड कपड़े पहने हुए हैं।

उसके पास एक बल्ब और एक तार जाती हुई दिखाई दे रही है।

कुछ ताले भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।